इस कमरे पे हमें दो पंखे और कुछ चार्ट पेपर दिखाई दे रहा है।

और ये मूर्ति का रंग जो है वह सुना सुनहरा है।

और उसके आगे भी एक बहुत बड़ा सा मैदान है।

रास्ता काफी क्लीन दिखाई दे रहा है।

यह एक स्टोर प्रतीत हो रहा हैं जिस स्टोर पे काफी सारे काफी अलग अलग तरह के कपड़े हैं।

दुकान में जो लाइटनिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से किया गया है।

और उसी के साइड पे एक टेबल और चेयर भी है।

काफी सारे कपड़े सूखे हुए हैं इस स्कूल के आगे--

उस दुकान के ऊपर लिखा हुआ है डोनड्रब एंटरप्राइज ।

इसके अंदर का अह बहुत बड़े बड़े लाइटनिंग किए गए हैं।

इधर पे हमें एक शोरूम दिख रहा है।

आप उस टेंपल तक जाने के लिए एक सीढ़िया है जिसपे कै काफी सारे लोग जा रहे हैं।

सामने पे एक पेड़ है मौसम काफी सुहाना लग रहा है।

और ये दुकान लाल और लाल कलर का है और सफेद कलर का भी।

और इस दुकान पे काफी अच्छी लाइटीनिंग है।

ठीक उसी के सामने पे एक काफी बड़ा सा बिल्डिंग है।

कई सारी गाड़ियां पार्क है और कई सारी गाड़ियां चल रहा है।

इस घर की तरफ एक रास्ता जा रहा है।

और उसके अगल बगल काफी पेड़ पौधे हैं।

और उन सभी लोगों ने माक्स पहना हुआ है।